यह एक पार्किंग एरिया लग रहा है।

एक बैग भी रखा हुआ है।

ऊपर फैन है साइड में बहोत सारा दरवाजा है।

सामने बहोत अच्छा नजारा है।

बहुत सारा छोटा बच्चा है।